आस-पास लाइटे लगी हुई है सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ लगी है आस-पास रेलिंग बनाई गई है।

सामने दो बर्तन रखे हुए हैं पीछे बहुत सारी औरतें बैठी हुई है तथा एक व्यक्ति बेग में कुछ चेक कर रहा है।

अंदर की साइड में एक टेबल रखी हुई है तथा सेलफोन चार्जर व अन्य सामान रखे है एक व्यक्ति खड़ा है जिसने व्हाइट हाफ टी-शर्ट पहना है बगल में दूसरे शॉप के काउंटर पर एक व्यक्ति खड़ा है बाहर की साइड पे एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है।

एक औरत बैठी हुई है जिसने अपने चश्मे को सर के ऊपर लगाया हुआ है दोनों ने जूते नहीं पहन रखे हैं।

यह एक माउंटेन है जहां माउंटेन के नीचे एक छोटी सी गुफा बनी हुई है।

एक व्यक्ति खड़ा है जिसने रेड कलर का चौकड़ी शर्ट पेहना है पैंट में अपने हाथ को डाला हुआ है तथा सर पर कैप पेहनी है पीछे की साइड बहुत सारे पेड़-पौधे है।

-- काउंटर पे के ऊपर एक औरत बैठी है जिसके हाथ में एक मछलियों को काटने का औजार है सामने एक व्यक्ति मछलियों को चेक कर रहा है बगल में दूसरी औरत उसे देख रही है।

नाव के कोनो पर एक औरत का औरत बैठी हुई है तथा साइड में एक छोटी-सी छत बनाई गई है जिसके नीचे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं सनसेट हो रहा है।